यह एक झरने का दृश्य है जिसमे की पानी बह रहा है पत्थरलो से होते हुए।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

यहां पे बालकोनी का डिजाइन में ईंटे का कलर दिया गया है और यहां पे तार दिखाई दे रही है।

यहां पे पीछे में एक पानी का टंकी भी दिखाई दे रहा--

यहां पे बोहत सारे टेबल कुर्सी भी लगे हुए है और जमीन मे यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है।

वहां पे एक घंटा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ लोगे खड़े हुए हैं और यहां पे एक पंखा भी दिखाई दे रहा हैयहां पे कुछ माइक भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी सफेद रंग का टोपी पहने हुए है यहां पे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक रूम है जिसमे तीन व्यक्ति व्याम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है यहां पर पीले रंग का पेंट मारा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें से बहुत सारे साइकिल हैं।

यहां पे स्टील का पाइप लगा हुआ है और यहां पे बहुत सारी लाइट लगे हुए हैं ।

यहां पे बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही है जोकि व्यायाम करते हुए दिखाई दे रही है।

यहां पे एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।